टीशर्ट का रंग व्हाइट है और लूजर का रंग हल्का ग्रे है तथा वह सर पे टोपी लगाए हुए है और आंखों पे चश्मा लगाए हुए है।

यहां पे बाल्टी भी नजर आ रहा है और यहां पे दो बच्चे भी नजर आ रहे हैं।

कुछ पौधों के ऊपर फूल भी नजर आ रहे हैं और वह वाइट कलर का हेम --

उसमें लिखा हुआ सेवा केंद्र आधार डाउनलोड ओरिजिनल आधार विथ आवर मोबाइल लिंक केवल दस मिनट में प्राप्त करें।

दो आदमी खाना खा रहा है तथा यहां पे बहुत सारी कुर्सियां भी नजर आ रही है।

जहां पर एक मंदिर भी दिख रहा है।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

तथा यहां पे कांच की मदद से और लोहे की मदद से बनाया गया है।

यह एक मंदिर का दृश्य है जहां पर बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

यह एक गाड़ी का दृश्य है जहां पर एक बड़ा सा गाड़ी नजर आ रहा है तथा उसमें कलर किया गया है व्हाइट और ऑरेंज से।

यहां पे बहुत सारे लाइटें भी लगाई गई हैं और रंग बिरंगे सजाये भी गए हैं रिब--

यह एक बजार का दृश्य है जहां पर बहोत बड़े बड़े घर नजर आ रहे हैं।

यह एक दुकान का अंदर का दृश्य है यहां पर बहुत सारे फ्रिज दिख रहे हैं तथा वाशिंग मशीन और टी_वी भी नजर आ रहा है।

तथा दोनों के चेहरे पर ब्लर किया गया है।

एक दुकान का अंदर का दृश्य है यहां पर बहुत सारे बाल्टियां नजर आ रही है।

यहां पे बहुत सारे टेंट भी लगाए हुए हैं और टेंट के ऊपर बहुत सारे फूल पत्तियां भी सजाया गया है और झालरें भी लगाए गए हैं।

यह एक बड़ा सा हॉल का दृश्य है जहां पर बहोत सारे लाइटें लगाई हुई हैं।